और भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यह एक जिम का फोटो है।

यहां पे एक कार खड़ी है बाहर में।